कुछ मज़दूर भी दिखाई दे रहे है जो की काम क्र रहे है ये कन्ट्रक्सन साईट लग रही है जहां पर काम चल रहा है बिल्डिंग का--

जिसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यह बिल्डिंग एक सफ़ेद कलर और लाल कलर में बनी हुई है।

ये फोटो एक गाँव श्रेत्र का लग रहा है जिसमें की एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जोकि पानी की बीच से निकल रहा है।

बस चारो ओर ये हरियाली दिखाई दे रही है एक किसान ये ट्रैक्टर चला भी रहा है जोकि हरे कलर का ट्रैक्टर है जिसमें ट्रोली लगी हुई है।

यह इमेज किसी ड्रोन से ली गई है जो कि किसी मेले का द्रश्य दिखाई दे रहा है एक मे बड़े बड़े झूले लगे हुए है और काफी चहल पहल दिखाईं दे रही है और साइड मे बहुत बड़ा ग्राउन्ड भी पड़ा है।

यह इमेज किसी स्कूल कॉलेज या भवन की एबिल्डिंग कीदिखाई दे रही है जिसमे बीच में बहोत सारी आ जगह पड़ी हुई है बहोत--

यह इमेज किसी ड्रोन की सहायता से दी गई है जिसमें नदी तालाब पहाड़ व पठार दिखाई दे रही है।

ये इमेज किसी स्कूल कॉलेज या किसी अ बिल्डिंग का फोटो है जो कि दो मंजिल है ईमारत दिख रही है।

यह इमेज एक पहाड़ी छेत्र से निकले हुए रास्ते की है जो की बहुत सुन्दर दिख रहा है एक लाइट भी लगी हुई है।

ये इमेज एक फ्लावर शॉप की है जिसमें फ्लावर रखे हुए हैं बहुत सारे जिसमें बहुत सारी मूर्ति रखी हुई हैं बहुत सारे और एंटीक पीसेस भी रखे हुए हैं जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे है।

ये इमेज किसी अभ्यरण की दिख लग रही है जिसमे एक बड़ा-सा गेट बना हुआ है।

ये इमेज किसी छत से ली गयी है जो कि साम के टाइम का है जिसमें कि सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है।